एक बहोत बड़ी बिल्डिंग नीले और लाल कलर की--

नजर आ रही है जिस पर--

यहां पर मंदिर या गुरुद्वारे का शीर्ष--

दिख रहा हैं व्हाइट और गोल्डन कलर का हैं बड़ासा--

बसें सिटी बसेस खड़ी हुए हैं।

पर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

यहां एक विवाह समूह समारोह का--

ये एक स्कूल का बरामदा दिख रहा है।

समुद्र के किनारे पर काफी सारे लोग आए हुए हैं।

यह किसी मॉल का सीन है जिसमें कपडे पंखे और भी बहोत सारे सामान--

ये अवसर पर मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ भी आयी हुई है।

यह बहुत लंबा चौड़ा रोड नजर आ रहा है।

और बहुत सारे लोग अपने अपने गाड़ियों पर बैठे हुए हैं।

और मोटरसायकल और एक पलंग पर बुढ़े बाबा बैठे हुए हैं।

जिसकी अ ऊनाई कि हुई है गुलाबी और सफेद और काले धागे से --

एक टेबल पर बहुत बड़ी स्क्रीन --

यहां एक ग्रे कलर कार खड़ी हुई है जिसके हैडलाइट्स जल रहे हैं।

बल्कि केहना चाहिए ड्राइंग हॉल नजर आ रहा हैं इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ कुछ लिख रहा हैं।

जिस पर लिखा हुआ है हरिओम कंपलेक्स और--

यह एक गोडाउन दिख रहा है जिसमें कई प्रकार की बोरियां रखी हुई हैं कुछ पीले कुछ सफेद।

गुरुद्वारे पर ढेर सारी सीढ़ियां और रेलिंग भी नजर आ रही है।

और कुछ उपकरण भी रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति सजावट कर रहा है।

यहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

यहां कई ईंटें पत्थर रखे हुए हैं।

यह मा मॉल की अ चित्र दिख रहा है यह मॉल का पिक्चर दिख रहा है।

यह भैंस का बाड़ा दिख रहा है जिसमें तीन भैंसे खड़ी हुई हैं।

यहां बहोत सारे मजदूरों का काम होता है।